एन स्टेशन में दिखाई दे रहा है।

री जैसा भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में कांच से बना हुआ बहुत सारा बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में एक लाइट भी लगा के रखा है।

नाच रहा हैं और स्टेज के पीछे ब्लैक कलर का कपड़ा लगा के रखा है।

मुझे इस पिक्चर में गोभी भी दिखाई दे रहा है।

और गाड़ी के अंदर में शीशे में पर्दे भी लगा के रखे हैं।

बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगा के रखा है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

और बंबू से बनाया हुआ चेयर भी रखा हुआ है।